वहां पे लोग आना जाना कर रहे बहोत सारे लोग अंदर में बहोत सारे लोग बा--

येलो कलर के भी लाइट जल रहे हैं लाइट बहुत क्यूट दिख रहे हैं।

मोबाइल की शॉप है कि सारे मोबाइल छोटे बड़े छोटे --

शॉप रात का रात का टाइम है शॉप चलो उसके सामने हर शॉप चलो --

उसके ऊपर एक लाइट लगी है वहां पे एक बड़ा सा पोस्टर --

घर के ऊपर अ ठहरे हुए हैं कुछ नाच रहे हैं कुछ गा रहे हैं इतने सारे लोग ठहरे हुए हैं बैठे हुए--

यहां पे एक फ्लाइट है फ्लाइट के ऊपर बच्चा खेल रहा है ऊपर से ये बच्चा आया हुआ है यहां पे दो--

यहां पे एक आदमी ठहरा हुआ है वो कुछ खा नहीं ले रहा है यहां पे--

वहां पे परदे लगे हुए हैं आसमानी कलर के औरत ने रेड कलर की साड़ी पहनी है और एक ब्लैक कलर की शर्ट पहने एक आदमी--

वाइट कलर कपड़े पहने है उसने टोपी भी डाला है और चॉकलेटी कलर के कपड़े पहने उसने भी टोपी डाला हुआ है वो कुछ देक रहे --

एक ऑरेंज कलर का शर्ट पहना हुआ। वह पीछे उसके बाद में येलो कलर की ड्रेस पहने हुए लड़की आगे--

वहां पे एक आदमी बाहर निकला हुआ है शॉप में से उसके पास .

और बीच मे फव्वारा चटा है ऊपर कितने सारे फ्रूट्स रखे--

यहां पे डाइनोसर रखा हुआ है डाइनोसर का बच्चा भी रखा हुआ है सब लोग आके इसको देख रहे--

एक वो बनाते हैं यहां पे कुछ वेफर्स भी हैं और इतने सारे बूंदी है लड्डू है पेड़े--

यहां पे इतना सारे ऑयल की शॉप है ऑइल्स दे रहे हैं इतने सारे ऑयल्स लगे हुए हैं।

सबसे बड़ी सी शॉप है ऑइल्स की यहां पर बहुत मिलता--

रेड कलर के जा रहे है और हरे कलर के जा रहे है कुछ छाड़ छुक फूंके हुए--

ऊपर हैं ऊपर साइड मे --

यहां पे इतने सारे तीन अलग-अलग डेकोरेशन किए हुए हैं वहां पे इतनी सारी लाइट्स है ऊपर इतने सारे फूल रखते हैं वहां पे चमक रहे हैं इतनी सारे लाइट्स .

में है अंधेरा अंधेरा छाया मगर ड डेकोरेशन में इतनी लाइट लगाई हुई है कि सब उजाला उजाला दिख रहा है अंधेरा नहीं दिख रहा।

ये दो लड़के एक लड़का ने साइकिल पे जा रहा है और .

एयरपोर्ट है एयरपोर्ट पे बहुत सारे लोग ठहरे हुए हैं कुछ लोगों के हाथ में बैग है कुछ लोगों के हाथ में बैग नहीं .

यहां पर दो बड़े बड़े बंबू है एंड दो आदमी कार खड़े हुए हैं कार का दुकान खुला हुआ --

कोई उतर रहे हैं कोई पास में--

दिन में लोग का है दरवाजे पे आते हैं।

यहां पे इतने सारे गुलदस्ते लगे हैं और इतने सारे झा--

वहां पर बहुत सारे पोस्टर लगे हुए--